यहाँ पर एसी भी लगी हुई है साथ में और इसका व्यू कितना बढ़िया --

देखिए गाइस ये यहाँ पर मेरे को लगता है ये मस्जिद वगैरह है यहाँ पर इसका डिजाइन खिड़की के ऊपर थोड़ा डिजाइन कितना बढ़िया लगा गया और इसकी अभी अभी अभी लिसाई वगैरह हुई है और --

अभी इसकी लिसाई वगैरह होगी और इसकी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये बहुत ज्यादा सुंदर घर बनेगा इसे बनाना बहुत मुश्किल भी --

इनको पैसे बोहोत कम मिलते हैं इन्हें पैसे ज्यादा देने चाहिए।

देखिए गाइस यहाँ पर मेरे को लगता है ये मंडी वगैरह है यहाँ पर सब्जी वगैरह वगैरह यहाँ पर देखिए काफी दुकानें लगी हुई है।

ये हमारे यहाँ ऐसा गंगा के किनारे यहां पर मेला वगैरह लगा हुआ है कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर नहाने वगैरह आई हुई है साथ में बोट्स हैं तो घूमने में बहुत ज्यादा मजा --

इंजन बोहोत ज्यादा हैवी होते हैं और ये इजिली ट्रेन को इतनी भारी ट्रेन को खींच लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह में इजिली पोहचा देते हैं।